एक साड़ी की दुकान दिखाई पड़ रही है बहोत सारी साड़ीया दिखाई पड़ रही है।

आज एक तस्वीर में एक घोड़ा--

इस तस्वीर में मुझे एक चाय की दुकान दिखाई पड़ रही है जिसका नाम पंकज टी स्टाल है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बहोत सारे पेड़ पौधे दिख दे रहें है।